सामने में कोई एक सर खड़े हैं जो कुछ बता रहे हैं बहोत सारे कुर्सियां लगी हुई जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं एक टीचर खड़ी हुई हैं।

यह एक पेट्रोल पंप है जिसमें एक बाइक वाला पेट्रोल डलवा रहा है और एक पेट्रोल डाल री है एक पैसा ले रहे हैं और दो झने खड़े हुए हैं।

साइड में बहोत सारे कार खड़े हैं।

यह एक भारत पेट्रोलियम का गाड़ी ट्रक खड़ा हुआ है।

यहां एक बिल्डिंग बर रहा है जिसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं एक मोबाइल में बात कर रहा है।

दो तीन लोग बैठे हैं आस पास बहुत हरियाली है और इसमें बादल भी दिखाई दे रहे हैं।

राइट साइड में रास्ता है ऊपर ब्रिज बना है जिससे लोग आते जाते है इसमें एक नाव दिख रहा है नाव चलाने वाला एक खड़ा है।

बाहर एक मोबाइल में बात कर रहे हैं।

जहां रास्ते पे एक आदमी जा रहा है बड़े बड़े पेड़ हैं छोटे घास हैं एक--

कुछ मूर्तियां रखी हुई हैं दुर्गा माता गणेश भगवान हनुमान जी।